जो काफी सुंदर है सामने सिस्टर खड़ी हो खड़ी है जो की उनकी अनुयायी है ।

शिक्षक उनका निरिक्षण कर रहा है बच्चे कुछ बनाने मैं व्यस्त है और से अपना कार्य कर रहे है।

इस चित्र मैं दिखाई जाने वाली जगह रंग बिरंगी रोशनी से भरी हुई सजी हुई है रंग बिरंगी रोशनीयां काफी उजाला और आकर्षण--

ये चित्र मे जो कक्ष दिखाई दे रहा है वो शायद कंप्युटर कक्ष है वहां पर सामने एक कंप्युटर रखा है जो की खुला है उसके ।

इस चित्र मैं हमें दिखाई दे रहा है की थ्रेसर लगा हुआ है जिसमे अम गेहूँ को बालियों से निकाल ने का कार्य किया जा रहा है।

इस चित्र मैं बच्चे कागज की सहायता से कुछ साजावटी सामान बनाने का अभ्यास कर रहे है यहाँ पर बच्चे--